जैसे की यह सब नृत्य कर रही है ये लड़की लोग नृत्य कर रहे हैं और ढेर सारे लोग हैं। यहाँ बहोत सारे लोग --

और यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़े भी है और दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है।

यह एक ऑफिस है जहाँ से कि आप यह हॉस्पिटल है जहाँ कि आप आकर यहाँ म-म-मरीज आते हैं और यहाँ से डॉक्टर से दिखवाते हैं।